खुला हुआ है वह स्वेटर में दिखाई दे रहा है कुछ तस्वीरें भी रखी हुई-- और एक लोहे की रैली भी लगी हुई ऊपर बादल भी दिख रहा है।